और स्कूल लगी हुई है बिल्डिंग खड़े हुए है कार पार्क हुए है।

और हरे भरे घास है येलो कलर का फूल लगा हुआ है सामने में--

बॉर्डर है वाइट कलर का पाइप लगी हुई है।

यह एक हॉस्पिटल है जो कि मिरर का--

कूलर है साम चेयर रखा हुआ है एक बिजली का बोर्ड लगे हुए हैं।

नीचे बुक स्टॉल है सामने में कस्टमर --

ऊपर पोस्टर लगे हुए हैं सामने भी लोहे के पोस्टर लगे हुए हैं।

गेस्ट बैठने का रूम भी बना हुआ है।

यह एक डेंटल हॉस्पिटल नजर में आ रहा है।

जाते है और एक यहाँ पे एक सामने गार्ड खड़ी हुई है यहाँ का नेचुरलाइज का टेस्ट बहोत अच्छा होता है यहाँ का डेकोरेशन भी बहोत अच्छा है।

बहोत सारे व्यक्ति अपने गाड़ी में पेट्रोल डला रहे है।

अगल बगल में बड़े बड़े पेड़ पौधे नजर में आ रहे हैं।

बहोत सारे कपड़ेज टंगे हुए है कांच की मिरर लगी हुए है।

मॉल में और मॉल में स्टॉप जाने के रास्ते बने हुए हैं।

छतरी लगा हुआ है छतरी के सहारे एक पाइप लगा हुआ है।

एक गुरु तेग बहादुर उद्योग नगर पालिका निगम रायपुर का गेट हुआ है।

सात आठ बेड लगे हुए हैं बैग रखा हुआ है कॉपी पुस्तक रखी हुई हैं चाय रखा हुआ है।

वहां पे एक ब्लू कलर का बेड रखा हुआ है और कत्था कलर का गद्दा।

ऐ पीछे बंगला है नीचे जमीन है।

यहां पे बहुत सारी यहां कूलर लगी हुई हैं ए_सी लगे हुए हैं।